ये चित्र एक जगह का है जिसमें सामने एक बोर्ड है जिस पर टैक्स फ्री ज़ोन लिखा हुआ है एक गेट है जो कि कांच का है साइड में एक अलमारी है।

ये चित्र एक जगह का है जिसमे चेयर्स रखी हुई है।

सामने की ओर टाइल्स की दीवार है टेबल पर बोतल रखी हुई है ए सामने काउंटर है।

जिसमें सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर एस.सी. बी.यू.एस. खुदरा महद महादीपुर लिखा --

ये चित्र एक जगह का है जिसमें बीच में एक गोल कुछ बना हुआ है बा ओम बाहर साइड पेड़ दिख रहे है।

ये चित्र एक दुकान का है जिसके ऊपर स्टार वर्ल्ड लिखा है।

बोर्ड पर डिज़ायर स्टाइल एनुअल फंक्शन फॉर यू लिखा है बाहर डमीज रखी हैं जो कि कपड़े पहने --

लाइटे लगी हैं फोटोज लगे हुए हैं बाहर कांच के गेट के बाहर डमी लगे --